यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जो बहुत दूर तक बना हुआ लम्बा भी है यूनिवर्सिटी का रंग भूरा और रेड है और आगे में ब्लैक भी है इसका एक गेट है जो बहोत बड़ा है जो गेट का रंग--

यहाँ एक लाइब्ररी है यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए है और एक सर है जो सेल्फी खींच रहा है और डी मैडम वो काउंटर पर बैठी हुई है कुछ लोग हस रहे है कुछ लोग बोल रहे है कुछ लोग आपस में बतिया भी रहे है।